और आसपास बड़े-बड़े लंबे-लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसकी के पीछे टावर भी है।

यहां पर इस तस्वीर में एक बंगला दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे --

कमरे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है।

पास में बहुत ही हरयाली है और बड़े-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए है और यहाँ पर एक मोर दिखाया गया है जिसके पंख बहुत--

यह तस्वीर एक विद्यालय की दिखाई गई है जिसका नाम है आदर्श सेसस्की उचित और विद विद्यालय--

यहां पर इस तस्वीर में एक भवन दिखाई दे रहा है जिसमें एक सफेद कलर का गे --

टांग रखा है अपने कंधे पे और उनके सीधे हाथ और उल्टे हाथ की साइड पे पेड़ है।

यहां तस्वीर में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर से --

अं दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग हरा है और यहां पहाड़ पर दो लड़के भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

है आ रहा है और यह लाल कल अ रंग और काले रंग के पेंट के खोके है ।

और इसके आसपास सफेद कलर की दीवाले दे रखी हैं और फिर --

जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान इसका नाम है विकास खंड स्त्रोत --

इस तस्वीर में एक अ लड़का झूला झूलता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ तस्वीर टंगी हुई है और यहां पर चित्रकारिता करी गई है एक पेड़ की।

यहां पर एक मैदान में शादी के लिए मंडप लगाया गया है जहां पर बहुत सारे --

पतंजलि टेस्टी नमकीन का ढाबा लगाया हुआ है जहां पे --

यह तस्वीरें के स्कूल के अंदर की दिखाई गई हैं।

यहां एक किताब कॉपी की दुकान है जहां पर अलमारी में बहुत सारी किताब --

दे रहा है और बड़े-बड़े पेड़ अ दिखाई दे रहे है जिनका रंग हरा है और सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे पर--

दे रहे है जिसमें सूखी पीली मिट्टी दिखाई दे रही है और कुछ बच्चे खेलते हुए से दिख रहे है और इनके आसपास हरे-हरे --

च अ सीढ़िए दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर दो आदमी जाते हुए से दिख रहे हैं।